सामने देख रहे है एक ग्राउंड टाइप का सड़क भी देख रहे होंगे सड़क के बगल-बगल मे बहुत सारे घास ग्रीन ग्रीन --

अच्छा ही लग रहा वॉल का कलर सीलिंग का कलर आप देख सकते हो वाइट है निचे का फर्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा साफ-सुथरा --

और बैनर आप देख रहे होंगे एक स्कूल का बैनर टँगा हुआ है पब्लिक स्कूल का | ग्रीन कलर का बहुत ही अच्छा पोस्टर और पंडाल भी बहुत अच्छे से सजाया गया है | वाइट ब्राउन येल ब्लू कलर के |

जो वाइट कलर के कॉस्टयूम पेहने हुए है।